तथा सामने की ओर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

पेड़ हरे कलर का है तथा सामने ही काफी मिट्टी से नजर आ रही है।

यह दुकान कपड़े की दुकान नजर आ रही है जिसका नाम कलश है।

यह दृश्य किसी मंदिर या तीर्थ स्थल का है जहां पे सामने की ओर कुछ सीढ़ियां बनी हुई है जो लाल रंग से पेंट की हुई है।

इसमें सामने की ओर एक रास्ता आ रहा है जो अंदर की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है सामने एक व्यक्ति और भी नहीं आ रहा है।

इसमें ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं तथा साइड में दो स्थम्ब नजर आ रहे हैं।

ये दृश्य किसी मेडिकल स्टोर का है जिसका नाम शुभ मेडिकल स्टोर है।

इसके प्रोफेसर अमित करौलिया है इसमें सामने की ओर मेन गेट दिख रहा है।

कुर्सी का रंग सफेद है तथा टेबल पर एक कैंची भी दिखाई दे रही है।

इसमें सामने की ओर एक दूसरा गेट लगा हुआ है जो काफी बड़ा है।

उसमें सामने एक चित्र भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें सामने आनंद के नाम से जलता हुआ बोर्ड लगा हुआ है।

भवन के पीछे साइड कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इसमें ऊपर बहुत सारे पंखे नजर आ रहे हैं।

और यह व्यक्ति सामने की ओर देख रहा है यहां से काफी दूर तक का दिखाई दे रहा है।

जो हरे रंग के हैं तथा इसमें पीछे एक टंकी नजर आ रही है।

सामने एक टायर दिख रहा है जो पीले तथा स काले कलर का है।

तथा सामने ही कई सारी मिक्सिया भी नजर आ रही हैं इसमें सबसे ऊपर बहुत सारी प्रेस नजर आ रही है।

यह दृश्य किसी स्कूल या बड़ी बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है।

मशीन सफेद कलर की है तो कुछ काले कलर की एक बड़ी सी मशीन सामने जो नीले कलर की दिखाई दे रही है।

जो सफेद कलर से पेंट की गई हैं। सामने की ओर एक बलब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा सामने की दीवार गुलाबी रंग की पेंट नजर आ रही है।

जीसमें ये सामने की ओर एक मूर्ति दिखाई दे रही है तथा एक ऊपर घंटा भी दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है जिसके बगले में एयरफोन पड़ी हुई है तथा जेब में मोबाइल है।

ये दृश्य किसी पुराने मंदिर का नया आ रहा है जिसमें सामने की ओर एक स्तंभ है जिसपे बहुत सारी नक्काशी की हुई है।

तथा इसमें एक क्यू_आर कोड भी नजर आ रहा जिसमें पीछे की ओर बहुत सारी कुरकुरे तथा बहुत सारी चीजें टंगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें सामने की और मेन बैठने का स्थान भी नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक सैलून का है जिसमें ऊपर बाल दाढ़ी सैलून करके लिखा हुआ है।

यह दृश्य किसी मैकेनिक की दुकान का है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।